इसमें हम को एक घर बनते हुए दिखाई दे रहा है इसमें चार पांच कुर्सी लगी हुई है।

दुकान दिखाई दे रही है फुलकी की यहाँ पर बहोत सारा पानी भरा हुआ है अंदर और ये देखने मैं चारो तरफ बहोत हरियाली है।

दो-तीन लाइटे लगी हुई है और इसमें एक कार खड़ी हुई है इसमें एक पेंटिंग लगी हुई एग।

इस इमेज मे हमे एक रंगोली बनाते हुए दो तीन लड़की दिखाई दे रही है यहाँ पर छोटा ये अलग करे हुए दो तीन लड़की बीच मे बैठी हुई है दो तीन अलग--

अ सामने और एक कैमरा लगा हुआ है एक ए_सी लगी हुई है और इसमे दोस्त हमारा लोग खड़े हुए है।

हमको एक ड्रॉइंग शीट लेते हुए बहोत सारी बच्चियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे गमला दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमको एक व्यक्ति डी_एस_पी सोडा कॉफी शॉप का पोस्टर लगाते हुए दिखाई दे रहा है उसमे दो तीन लोग बैठे हुए--

यहाँ सामने एक शटर दिखाई दे रही है कुर्सी दिखाई दे रही है यहाँ पर जाली लगी हुई है जाली के बाहर बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

इस इमेज में हमें एक भरत नाट्यम करते हुए व्हाइट कलर की शर्ट--

इस इमेज मे हम को बहोत सारे लोग इंजीनियर दिखाई दे रहे है यह दिखने मे बहोत अच्छा लग रहा है यहाँ पर एक --

इस इमेज मे हमको बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहोत सारी बेंच दिखाई दे रही है यहाँ तीन चार जाली लगी हुई है।

--इमेज मे हमे एक भगवान का मंदर दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई है।

कुर्ती पहने हुए टीचर खड़े हुई हैऔर इसमे बहोत सारे लोग बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई है यहाँ पर बेंच पर बैठे हुई है यहाँ एक कुरसी दिखाई दे रही एक गमला दिखाई दे रहा है देखने को बहोत अच्छा लग रहा।

यहा बोहोत सारी लड़कीया बैठी हुई है जो की यहाँ पर पाय चिट लेके बैठी है पर बैठी है यहाँ पर उपर जाली लगी हुई हैं।

यहाँ पर हमको बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है बाहर यहाँ पर हमे एक गमला दिखाई दे रहा है अन्दर यह देखने मे बहोत अच्छा लग रहा है यहाँ पर येल्लो कलर का पैंट किया हुआ दिखने मे--